मेरे प्यारे देशवासियो सादर नमस्कार
एक तरफ देश उत्सवों में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ से हिन्दुस्तान के किसी कोने से जब हिंसा की खबरें आती हैं तो देश को चिंता होना स्वाभाविक है
ये हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है देश की एकता के लिए जीजान लगा देने वाले सरदार पटेल का देश है
सदियों से हमारे पूर्वजों ने सार्वजनिक जीवनमूल्यों को अहिंसा को समादर को स्वीकार किया हुआ है हमारी ज़हन में भरा हुआ है
अहिंसा परमो धर्म ये हम बचपन से सुनते आये हैं कहते आये हैं
मैंने लाल किले से भी कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी चाहे वो सांप्रदायिक आस्था हो चाहे वो राजनैतिक विचार धाराओं के प्रति आस्था हो चाहे वो व्यक्ति के प्रति आस्था हो चाहे वो परम्पराओं के प्रति आस्था हो आस्था के नाम पर कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है
डॉ बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है उसमे हर व्यक्ति को न्याय पाने की हर प्रकार की व्यवस्था है
मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कानून हाथ में लेने वाले हिंसा के राह पर दमन करने वाले किसी को भी चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो न ये देश कभी बर्दाश्त करेगा और न ही कोई सरकार बर्दाश्त करेगी
हर किसी को कानून के सामने झुकना होगा कानून ज़बाबदेही तय करेगा और दोषियों को सज़ा दे के रहेगा
मेरे प्यारे देशवासियो हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और ये विविधताएँ खानपान रहनसहन पहनाव वहाँ तक सीमित नहीं है
जीवन के हर व्यवहार में हमें विविधताएँ नजर आती हैं
यहाँ तक कि हमारे त्योहार भी विविधताओं से भरे हुए हैं और हज़ारों साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के कारण सांस्कृतिक परम्पराएँ देखें सामाजिक परम्पराएँ देखें ऐतिहासिक घटनायें देखें तो शायद ही 365 दिन में कोई दिन बचता होगा जबकि हमारे यहाँ कोई त्योहार से न जुड़ा हुआ हो
अब ये भी आपने देखा होगा कि हमारे सारे त्योहार प्रकृति के समय पत्रक के अनुसार चलते हैं
प्रकृति के साथ सीधासीधा संबंध आता है
हमारे बहुत सारे त्योहार तो सीधेसीधे किसान से जुड़े हुए होते हैं मछुआरों से जुड़े हुए होते हैं
आज मैं त्योहारों की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आप सबको मिच्छामि दुक्कड़म कहना चाहूँगा
जैन समाज में कल संवत्सरी का पर्व मनाया गया
जैन समाज में भाद्र मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है
पर्युषण पर्व के आख़िरी दिन संवत्सरी का दिन होता है
ये सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत परम्परा है
संवत्सरी का पर्व क्षमा अहिंसा और मैत्री का प्रतीक है
इसे एक प्रकार से क्षमावाणी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कड़म कहने की परंपरा है
वैसे भी हमारे शास्त्रों में क्षमा वीरस्य भूषणम् यानि क्षमा वीरों का भूषण है
क्षमा करने वाला वीर होता है
ये चर्चा तो हम सुनते ही आए हैं और महात्मा गाँधी तो हमेशा कहते थे क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है
शेक्सपियर ने अपने नाटक थे मर्चेंट ओएफ वेनाइस में क्षमा भाव के महत्त्व को बताते हुए लिखा था मर्सी इस ट्वाइस ब्लेस्ट इत ब्लेसेथ हिम थाट गिव्स एंड हिम थाट टेक्स अर्थात् क्षमा करने वाला और जिसे क्षमा किया गया दोनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है
मेरे प्यारे देशवासियो इन दिनों हिन्दुस्तान के हर कोने में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है और जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो सार्वजनिकगणेशोत्सव की बात स्वाभाविक है
बालगंगाधर लोकमान्य तिलक ने 125 साल पूर्व इस परंपरा को जन्म दिया और पिछले 125 साल आज़ादी के पहले वो आज़ादी के आन्दोलन का प्रतीक बन गए थे
और आज़ादी के बाद वे समाजशिक्षा सामाजिकचेतना जगाने के प्रतीक बन गये हैं
गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलता है
इस महापर्व को एकता समता और शुचिता का प्रतीक कहा जाता है
सभी देशवासियों को गणेशोत्सव की बहुतबहुत शुभकामनाएँ
अभी केरल में ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है
भारत के रंगबिरंगे त्योहारों में से एक ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है
यह पर्व अपने सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व के लिए जाना जाता है
ओणम का पर्व केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है
यह पर्व समाज में प्रेम और सौहार्द का सन्देश देने के साथसाथ लोगों के मन में एक नयी उमंग नयी आशा नया विश्वास जागृत करता है
और अब तो हमारे ये त्योहार भी टूरिज्म के आकर्षण का भी कारण बनते जा रहे हैं
और मैं तो देशवासियों से कहूँगा कि जैसे गुजरात में नवरात्रि का उत्सव या बंगाल में दुर्गा उत्सव एक प्रकार से टूरिज्म का आकर्षण बन चुके हैं
हमारे और त्योहार भी विदेशियों को आकर्षित करने के लिये एक अवसर हैं
उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं सोचना चाहिये
इन त्योहारों की श्रृंखला में कुछ ही दिन बाद देश भर में ईदउलजुहा का पर्व भी मनाया जाएगा
सभी देशवासियों को ईदउलजुहा की बहुतबहुत बधाइयाँ बहुत शुभकामनाएँ
त्योहार हमारे लिए आस्था और विश्वास के प्रतीक तो हैं ही हमें नये भारत में त्योहारों को स्वच्छता का भी प्रतीक बनाना है
पारिवारिक जीवन में तो त्योहार और स्वच्छता जुड़े हुए हैं
त्योहार की तैयारी का मतलब है साफ़सफाई
ये हमारे लिए कोई नयी चीज़ नहीं है लेकिन ये सामाजिक स्वभाव बनाना भी ज़रूरी है
सार्वजनिक रूप से स्वच्छता का आग्रह सिर्फ़ घर में नहीं हमारे पूरे गाँव में पूरे नगर में पूरे शहर में हमारे राज्य में हमारे देश में स्वच्छता ये त्योहारों के साथ एक अटूट हिस्सा बनना ही चाहिये
मेरे प्यारे देशवासियो आधुनिक होने की परिभाषाएँ बदलती चली जा रही हैं
इन दिनों एक नया डाइमेंशन एक नया पैरामीटर आप कितने संस्कारी हो कितने आधुनिक हो आपकी थाउटप्रोसेस कितनी मॉडर्न है ये सब जानने में एक तराजू भी काम में आने लगा है और वो है एनवायर्नमेंट के प्रति आप कितने सजग हैं
आपके अपनी गतिविधियों में इकोफ्रेंडली एन्वायर्नमेंटफ्रेंडली व्यवहार है कि उसके खिलाफ़ है
समाज में अगर उसके ख़िलाफ़ है तो आज बुरा माना जाता है
और उसी का परिणाम आज मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों ये गणेशोत्सव में भी इकोफ्रेंडली गणपति मानो एक बड़ा अभियान खड़ा हो गया है
अगर आप यू ट्यूब पर जा करके देखेंगे हर घर में बच्चे गणेश जी बना रहे हैं मिट्टी ला करके गणेश जी बना रहे हैं
उसमें रंग पुताई कर रहे हैं
कोई वेजिटेबल के कलर लगा रहा है कोई कागज़ के टुकड़े चिपका रहा है
भांतिभांति के प्रयोग हर परिवार में हो रहे हैं
एक प्रकार से एनवायर्नमेंट कॉन्शसनेस का इतना बड़ा व्यापक प्रशिक्षण इस गणेशोत्सव में देखने को मिला है शायद ही पहले कभी मिला हो
मीडिया हाउस भी बहुत बड़ी मात्रा में ईसीओ फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं प्रेरित कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं
देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है और ये सुखद बदलाव है
और जैसा मैंने कहा हमारा देश करोड़ों करोड़ों तेजस्वी दिमागों से भी भरा हुआ है
और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नयेनये इनोवेशन जानते हैं
मुझे किसी ने बताया कि कोई एक सज्जन हैं जो स्वयं इंजिनियर हैं उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार से मिट्टी इकट्ठी करके उसका कॉम्बिनेशन करके गणेश जी बनाने की ट्रेनिंग लोगों की और वो एक छोटी से बाल्टी में पानी में गणेश विसर्जन होता है तो उसी में रखते हैं तो पानी में तुरंत दिलुते हो जाती है
और उन्होंने यहाँ पर रुके नहीं हैं उसमें एक तुलसी का पौधा बो दिया और पौधे बो दिए
तीन वर्ष पूर्व जब स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर को उसको तीन साल हो जायेंगे
और उसके सकारात्मक परिणाम नज़र आ रहे हैं
शौचालयों की कवरेज 39 से करीबकरीब 67 पहुँची हैं
2 लाख 30 हज़ार से भी ज्यादा गाँव खुले में शौच से अपने आपको मुक्त घोषित कर चुके हैं
पिछले दिनों गुजरात में भयंकर बाढ़ आई
काफ़ी लोग अपनी जान गंवा बैठे लेकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ तो हर जगह इतनी गन्दगी फ़ैल गई थी
ऐसे समय में गुजरात के बनासकांठा ज़िले के धानेरा में जमीयत उलेमाएहिन्द के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित 22 मंदिरों एवं 3 मस्जिदों की चरणबद्ध तरीक़े से साफ़सफ़ाई की
ख़ुद का पसीना बहाया सब लोग निकल पड़े
स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उदाहरण हर किसी को प्रेरणा देने वाला ऐसा उदाहरण जमीयत उलेमाएहिन्द के सभी कार्यकर्ताओं ने दिया
स्वच्छता के लिए समर्पण भाव से किया गया प्रयास ये अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है
मेरे प्यारे देशवासियो मैं आप सभी से एक आह्वान करता हूँ कि एक बार फिर 2 अक्टूबर गाँधी जयंती से 1520 दिन पहले से ही स्वच्छता ही सेवा जैसे पहले कहते थे जल सेवा यही प्रभु सेवा स्वच्छता ही सेवा की एक मुहिम चलायें
पूरे देश में स्वच्छता के लिए माहौल बनाएं
जैसा अवसर मिले जहाँ भी अवसर मिले हम अवसर ढूंढें
लेकिन हम सभी जुड़ें
इसे एक प्रकार से दिवाली की तैयारी मान लें इसे एक प्रकार से नवरात्र की तैयारी मान लें दुर्गा पूजा की तैयारी मान लें
श्रमदान करें
छुट्टी के दिन या रविवार को इकठ्ठा हो कर एकसाथ काम करें
आसपड़ोस की बस्ती में जायें नज़दीक के गाँव में जायें लेकिन एक आन्दोलन के रूप में करें
मैं सभी न्गोस को स्कूलों को कॉलेजेस को सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक नेतृत्व को सरकार के अफसरों को कलेक्टरों को सरपंचों को हर किसी से आग्रह करता हूँ कि 2 अक्टूबर महात्मा गाँधी की जन्मजयंती के पहले ही 15 दिन हम एक ऐसी स्वच्छता का वातावरण बनाएं ऐसा स्वच्छता खड़ी कर दें कि 2 अक्टूबर सचमुच में गाँधी के सपनों वाली 2 अक्टूबर हो जाए
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय MyGovइन पर एक सेक्शन बनाया है जहाँ शौचालय निर्माण के बाद आप अपना नाम और उस परिवार का नाम प्रविष्ट कर सकते हैं जिसकी आपने मदद की है
मेरे सोशल मीडिया के मित्र कुछ रचनात्मक अभियान चला सकते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड का धरातल पर काम हो उसकी प्रेरणा बना सकते हैं
स्वच्छसंकल्प से स्वच्छसिद्धि प्रतियोगिता पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये अभियान जिसमें आप निबंध की स्पर्धा है लघुफिल्म बनाने की स्पर्धा है चित्रकलाप्रतियोगिता आयोजित की जा रही है
इसमें आप विभिन्न भाषाओँ में निबंध लिख सकते हैं और उसमें कोई उम्र की मर्यादा नहीं है कोई एजीई लिमिट नहीं है
आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं अपने मोबाइल से बना सकते हैं
23 मिनट की फिल्म बना सकते हैं जो स्वच्छता के लिए प्रेरणा दे
वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है वो साइलेंट भी हो सकती है
ये जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उसमें से जो बेस्ट तीन लोग चुने जायेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर तीन होंगे स्टेट लेवेल पर तीन होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा
तो मैं हर किसी को निमंत्रण देता हूँ कि आइये स्वच्छता के इस अभियान के इस रूप में भी आप जुड़ें
मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इस बार 2 अक्टूबर गाँधी जयंती को स्वच्छ 2 अक्टूबर मनाने का संकल्प करें और इसके लिए 15 सितम्बर से ही स्वच्छता ही सेवा इस मंत्र को घरघर पहुंचायें
स्वच्छता के लिए कोईनकोई कदम उठाएँ
स्वयं परिश्रम करके इसमें हिस्सेदार बनें
आप देखिए गाँधी जयंती की ये 2 अक्टूबर कैसी चमकेगी
आप कल्पना कर सकते हैं 15 दिन के सफ़ाई के इस अभियान के बाद स्वच्छता ही सेवा के बाद 2 अक्टूबर को जब हम गाँधी जयंती मनाएगें तो पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने का हमारे भीतर कितना एक पवित्र आनंद होगा
मेरे प्यारे देशवासियो मैं आज एक विशेष रूप से आप सब का ऋण स्वीकार करना चाहता हूँ
ह्रदय की गहराई से मैं आप का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इसलिए नहीं कि इतने लम्बे अरसे तक आप मन की बात से जुड़े रहे
मैं इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ऋण स्वीकार करना चाहता हूँ क्योंकि मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ देश के हर कोने से लाखों लोग जुड़ जाते हैं
सुनने वालों की संख्या तो करोड़ों में है लेकिन लाखों लोग मुझे कभी पत्र लिखते हैं कभी मेसेज देते हैं कभी फ़ोन पे सन्देश आ जाता है मेरे लिए एक बहुत बड़ा खज़ाना है
देश के जनजन के मन को जानने के लिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है
आप जितना मन की बात का इंतज़ार करते हैं उससे ज़्यादा मैं आपके संदेशों का इंतज़ार करता हूँ
मैं लालायित रहता हूँ क्योंकि आप की हर बात से मुझे कुछ सीखने को मिलता है
मैं जो कर रहा हूँ उसको कसौटी पर कसने का अवसर मिल जाता है
बहुतसी बातों को नये तरीक़े से सोचने के लिए आपकी छोटीछोटी बातें भी मुझे काम आती हैं और इसलिए मैं आपके इस योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ आपका ऋण स्वीकार करता हूँ और मेरे प्रयास रहता है कि ज़्यादासेज़्यादा आपकी बातों को मैं स्वयं देखूँ सुनूँ पढूँ समझूँ और ऐसीऐसी बातें आती हैं
अब देखिये अब इस फोन कॉल से आप भी अपने आपको कोरलेट करते होंगे
आपको भी लगता होगा हाँ यार आपने कभी ऐसी गलती की है
कभीकभी तो कुछ चीज़ें हमारी आदत का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम ग़लत करते हैं
प्रधानमंत्री जी मैं पूना से अपर्णा बोल रही हूँ
मैं अपनी एक सहेली के बारे में बताना चाहती हूँ
वो हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी एक आदत देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ
मैं एक बार उसके साथ शॉपिंग करने मॉल गयी थी
एक साड़ी पर उसने दो हज़ार रूपये बड़े आराम से खर्च कर दिए और पीज़ा पर 450 रूपये जबकि मॉल तक जाने के लिए जो ऑटो लिया था उस ऑटो वाले से बहुत देर तक पाँच रूपये के लिए मोलभाव करती रही
वापस लौटते हुए रास्ते में सब्जी खरीदी और हर सब्जी पर फिर से मोलभाव करके 45 रूपये बचाये
मुझे बहुत बुरा लगता है
हम बड़ीबड़ी जगह एक बार भी बिना पूछे बड़ेबड़े भुगतान कर देते हैं और हमारे मेहनतकश भाईबहनों से थोड़े से रुपयों के लिए झगड़ा करते हैं
उन पर अविश्वास करते हैं
आप अपनी मन की बात में इस बारे में ज़रूर बताएँ
अब ये फोन कॉल सुनने के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि आप चौंक भी गये होंगे चौकन्ने भी हो गये होंगे और हो सकता है आगे से ऐसी गलती न करने का मन में तय भी कर लिये होंगे
क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम हमारे घर के आसपास कोई सामान बेचने के लिए आता है कोई फेरी लगाने वाला आता है किसी छोटे दुकानदार से सब्ज़ी बेचने वालों से हमारा संबंध आ जाता है कभी ऑटोरिक्शा वाले से संबंध आता है जब भी हमारा किसी मेहनतकश व्यक्ति के साथ संबंध आता है तो हम उससे भाव का तोलमोल करने लग जाते हैं मोलभाव करने लग जाते हैं नहीं इतना नहीं दो रूपया कम करो पाँच रुपया कम करो
और हम ही लोग किसी बड़े रेस्टॉरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बिल में क्या लिखा है देखते भी नहीं हैं धड़ाम से पैसे दे देते हैं
इतना ही नहीं शोरूम में साड़ी ख़रीदने जायें कोई मोलभाव नहीं करते हैं लेकिन किसी ग़रीब से अपना नाता आ जाये तो मोलभाव किये बिना रहते नहीं हैं
ग़रीब के मन को क्या होता होगा ये कभी आपने सोचा है उसके लिए सवाल दो रूपये पांच रूपये का नहीं है
उसके ह्रदय को चोट पहुँचती है कि आपने वो ग़रीब है इसलिए उसकी ईमानदारी पर शक किया है
दो रूपया पांच रूपया आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन आपकी ये छोटीसी आदत उसके मन को कितना गहरा धक्का लगाती होगी कभी ये सोचा है मैडम मैं आप का आभारी हूँ आपने इतना ह्रदय को छूने वाला फोन कॉल करके एक मेसेज मुझे दिया
मुझे विश्वास है कि मेरे देशवासी भी ग़रीब के साथ ऐसा व्यवहार करने की आदत होगी तो ज़रुर छोड़ देंगे
मेरे प्यारे नौजवान साथियो 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेलदिवस के रूप में मनाता है
ये महान हॉकी प्लेयर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है
हॉकी के लिए उनका योगदान अतुलनीय था
मैं इस बात का स्मरण इसलिए करा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े
खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने
अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नज़र आनी चाहिए
स्पोर्ट्स यानि फिजिकल फिटनेस मेंटल एलर्टनेस पर्सनैलिटी एनहांसमेंट मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा क्या चाहिए खेल एक प्रकार से दिलों के मेल की एक बहुत बड़ी जड़ीबूटी है
हमारी देश की युवा पीढ़ी खेल जगत में आगे आए और आज कम्प्यूटर के युग में तो मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि प्लेइंग फील्ड प्लेस्टेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है
कम्प्यूटर पर फिफा खेलिये लेकिन बाहर मैदान में भी तो कभी फुटबॉल के साथ करतब करके दिखाइये
कम्प्यूटर पर क्रिकेट खेलते होंगे लेकिन खुले मैदान में आसमान के नीचे क्रिकेट खेलने का आनंद कुछ और होता है
एक समय था जब परिवार के बच्चे बाहर जाते थे तो माँ पहले पूछती थी कि तुम कब वापिस आओगे
आज हालत ये हो गई है कि बच्चे घर में आते ही एक कोने में या तो कार्टून फिल्म देखने में लग जाते हैं या तो मोबाइल गेम पर चिपक जाते हैं और तब माँ को चिल्ला करके कहना पड़ता है तू कब बाहर जाएगा
वक़्तवक़्त की बात है वो भी एक ज़माना था जब माँ बेटे को कहती थी कि तुम कब आओगे और आज ये हाल है कि माँ को कहना पड़ता है बेटा तुम बाहर कब जाओगे
नौजवान दोस्तो खेल मंत्रालय ने खेल प्रतिभा की खोज और उन्हें निखारने के लिए एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल तैयार किया है जहाँ पूरे देश से कोई भी बच्चा जिसने खेल के क्षेत्र में कुछ उपलब्द्धि हासिल की है उनमें टैलेंट हो वो इस पोर्टल पर अपना बायोडाटा या वीडियो अपलोड कर सकता है
सिलेक्टेड एमर्जिंग प्लेयर्स को खेल मंत्रालय ट्रेनिंग देगा और मंत्रालय कल ही इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला है
हमारे नौजवानों के लिए तो खुशी की खबर है कि भारत में 6 से 28 अक्टूबर तक फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है आई दुनिया भर से 24 टीमें भारत को अपना घर बनाने जा रही हैं
आइये विश्व से आने वाले हमारे नौजवान मेहमानों का खेल के उत्सव के साथ स्वागत करें खेल को एंजॉय करें देश में एक माहौल बनाएं
जब मैं आज खेल की बात कर रहा हूँ तो मैं पिछले हफ्ते एक मेरे मन को बड़ी ही छू जाने वाली घटना घटी
देशवासियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ
मुझे बहुत ही छोटी आयु की कुछ बेटियों से मिलने का मौका मिला और उसमें से कुछ बेटियां तो हिमालय में पैदा हुई थी
समंदर से जिनका कभी नाता भी नहीं था
ऐसी हमारी देश की छ बेटियां जो नेवी में काम करती हैं उनका जज़्बा उनका हौसला हम सब को प्रेरणा देने वाला है
ये छ बेटियां एक छोटीसी बोट लेकर करके इन्स तारिणी तारिणी उसको लेकर कर के समुन्द्र पार करने के लिए निकल पड़ेगी
इस अभियान का नाम दिया गया है नाविका सागर परिक्रमा और वे पूरे विश्व का भ्रमण करके महीनों के बाद कई महीनों के बाद भारत लौटेगी
कभी एक साथ 4040 दिन पानी में बिताएगी
कभीकभी 3030 दिन पानी में बिताएगी
समुन्द्र की लहरों के बीच साहस के साथ हमारी ये छ बेटियां और ये विश्व में पहली घटना हो रही है
कौन हिंदुस्तानी होगा जिन्हें हमारी इन बेटियों पर नाज़ न हो मैं इन बेटियों के जज़्बे को सलाम करता हूँ और मैंने उनसे कहा है कि वो पूरे देश के साथ अपने अनुभवों को साझा करें
मैं भी नरेंद्रमोदी App पर उनके अनुभवों के लिए एक अलग व्यवस्था करूँगा ताकि आप ज़रूर उसे पढ़ पाएं क्योंकि ये एक प्रकार से ये साहस कथा है स्वानुभव की कथा होगी और मुझे खुशी होगी इन बेटियों की बातों को आप तक पहुंचाने में
मेरी इन बेटियों को बहुतबहुत शुभकामना है बहुतबहुत आशीर्वाद है
मेरे प्यारे देशवासियो 5 सितम्बर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं
हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस है
वे राष्ट्रपति थे लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे
वो हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीना पसंद करते थे
वे शिक्षा के प्रति समर्पित थे
एक अध्येता एक राजनयिक भारत के राष्ट्रपति लेकिन हर पल एक जीतेजागते शिक्षक
मैं उनको नमन करता हूँ
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था इत इस थे सुप्रीम आर्ट ओएफ थे टीचर टो अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नाउलेज
अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है
इस बार जब हम शिक्षक दिवस मनाएँ
क्या हम सब मिलकर के एक संकल्प कर सकते हैं एक मिशन मोडे में एक अभियान चला सकते हैं टीच टो ट्रांसफार्म एडुकेट टो एम्पावर लर्न टो लीड इस संकल्प के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं क्या हर किसी को 5 साल के लिए किसी संकल्प से बांधिए उसे सिद्ध करने का रास्ता दिखाइये और 5 साल में वो पाकर के रहे जीवन में सफ़ल होने का आनंद पाये ऐसा माहौल हमारे स्कूल हमारे कॉलेज हमारे शिक्षक हमारे शिक्षा संस्थान ये कर सकते हैं और हमारे देश में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जैसे परिवार में माँ की याद आती है वैसे ही समाज में शिक्षक की याद आती है
ट्रांसफॉर्मेशन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है
हर शिक्षक के जीवन में कहींनकहीं ऐसी घटनाएँ हैं कि जिसके सहज़ प्रयासों से किसी की ज़िन्दगी के ट्रांसफॉर्मेशन में सफ़लता मिली होगी
अगर हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो राष्ट्र के ट्रांसफॉर्मेशन में हम बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे
आइये टीच टो ट्रांसफार्म इस मंत्र को लेकर के चल पड़ें
प्रणाम प्रधानमंत्री जी
मेरा नाम है डॉक्टर अनन्या अवस्थी
मैं मुम्बई शहर की निवासी हूँ और होवार्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया रिसर्च सेंटर के लिये काम करती हूँ
एक रिसर्चर के तौर पर मेरी विशेष रूचि रही है वित्तीय समावेश में जिसको हम फाइनेंशियल इन्क्लूजन इनसे रिलेटेड सोशल शीम्स को लेकर और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 2014 में जो जनधन योजना लॉन्च हुई क्या आप कह सकते हैं क्या आँकड़े ये दिखाते हैं कि आज तीन साल बाद भारतवर्ष फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर है या ज्यादा सशक्त है और क्या ये सशक्तिकरण और सुविधायें हमारी महिलाओं को किसानों को मजदूरों को गाँव और कस्बों तक भी प्राप्त हो पायी हैं
मेरे प्यारे देशवासियो प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इन्क्लूजन ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आर्थिक जगत के पंडितों की चर्चा का विषय रहा है
28 अगस्त 2014 को मन में एक सपना ले करके इस अभियान को प्रारंभ किया था
कल 28 अगस्त को इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अभियान को तीन साल हो रहे हैं
30 करोड़ नये परिवारों को इसके साथ जोड़ा है बैंक अकाउंट खोला है
दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा ये नंबर है
आज मुझे एक बहुत बड़ा समाधान है कि तीन साल के भीतरभीतर समाज के उस आख़िरी छोर पर बैठा हुआ मेरा ग़रीब भाई देश की अर्थव्यवस्था के मूलधारा का हिस्सा बना है उसकी आदत बदली है वो बैंक में आनेजाने लगा है वो पैसों की बचत करने लगा है वो पैसों की सुरक्षा महसूस कर रहा है
कभी पैसे हाथ में रहते हैं ज़ेब में रहते हैं घर में हैं तो फ़ालतू ख़र्च करने का मन कर जाता है
अब एक संयम का माहौल बना है और धीरेधीरे उसको भी लगने लगा है कि पैसे कहीं बच्चों के काम आ जायेंगे
आने वाले दिनों में कोई अच्छा काम करना है तो पैसे काम आयेगें
इतना ही नहीं जो ग़रीब अपने ज़ेब में रूपे कार्ड देखता है तो अमीरों की बराबरी में अपने आपको पाता है कि उनके ज़ेब में भी क्रेडिट कार्ड है मेरी ज़ेब में भी रूपे कार्ड है वो एक सम्मान का भाव महसूस करता है
प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमारे ग़रीबों के द्वारा क़रीब 65 हज़ार करोड़ रूपया बैंकों में जमा हुआ है
एक प्रकार से ग़रीब की ये बचत है ये आने वाले दिनों में उसकी ताक़त है
और प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ जिसका अकाउंट खुला उसको इंश्योरेंस का भी लाभ मिला है
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक रुपया तीस रूपया बहुत मामूली सा प्रीमियम आज वो ग़रीबों की ज़िन्दगी में एक नया विश्वास पैदा करता है
कई परिवारों में एक रूपये के बीमे के कारण जब ग़रीब आदमी पर संकट आया परिवार के मुखिया का जीवन अंत हो गया कुछ ही दिनों में उसे 2 लाख रूपये मिल गए
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट यूपी योजना स्टैंड यूपी योजना दलित हो आदिवासी हो महिला हो पढ़लिख करके निकला हुआ नौज़वान हो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करने का इरादा वाले नौज़वान हो करोड़ोंकरोड़ों नौज़वानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बैंकों से बिना कोई गारन्टी पैसे मिले और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हुए इतना ही नहीं हर किसी ने एकआध एकआध दो को रोज़गार देने का सफ़ल प्रयास भी किया है
पिछले दिनों बैंक के लोग मुझे मिले थे जनधन योजना के कारण इंश्योरेंस के कारण रूपे कार्ड के कारण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण सामान्य लोगों को कैसा लाभ हुआ है उसका उन्होंने सर्वे करवाया और बड़ी प्रेरक घटनायें मिली
आज इतना समय नहीं है लेकिन मैं ज़रूर ऐसी घटनाओं को बैंक के लोगों से कहूँगा कि वो MyGovइन पर उसको अपलोड करें लोग पढ़ें लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी कि कोई योजना व्यक्ति के जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाता है कैसे नयी ऊर्जा भरता है कैसे नया विश्वास भरता है इसके सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने आये हैं
आप तक पहुँचाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और ऐसी प्रेरक घटना है कि मीडिया के लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं
वे भी ऐसे लोगों से इंटरव्यू करके नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दे सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो फिर एक बार आपको मिच्छामी दुक्कड़म
बहुतबहुत धन्यवाद